और दो व्यक्ति उसके नीचे स्नान कर रहे हैं।

कुछ गाड़ियां बाइक खड़ी है गली में--

ये सारी फास्ट फूड की चीजे हैं।

यहां पर एक सामने बड़ी सी डेयरी है।

एक व्यक्ति कैफे के अंदर बैठा हुआ है और दूसरा व्यक्ति लैपटॉप में कुछ काम कर रहा है।